दीवार पर एक लाइट लगी हुई है और इधर की तरफ एक --

कुछ हरे पर्दे लगे हुए हैं कुछ पीले पर्दे लगे हुए हैं।

लड्डू हैं पीले रंग के सफेद रंग के पेड़े हैं नीचे की तरफ नमकीन रखी हुई है सबसे नीचे तीन ट्रे रखी हुई हैं।

स्टेज है सिल्वर कलर का उसके पीछे --

फूलों से इस स्टेज को सजाया हुआ है नीचे कारपेट बिछा हुआ है रंग बिरंगा--

रोड पर एक बाइक है पर एक आदमी बैठा है।

खड़ी है उसमें कुछ सामान रखा है एक टेंपो भी खड़ा है।

एक घर बना हुआ है उस पर लैंटर लगा हुआ है बल्ली फट्टे लगे हैं बीच में रोड पर जाने के लिए रास्ता है एक स्कूटी खड़ी है।

यहां पर बहुत सारे हरे हरे पौधे लगे हुए हैं लाल रंग के गमलों में पीछे की तरफ कुछ --

ट्रेने नजर आ रही हैं एक खंबा है लोहे का और हरे हरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

साइड में एक गमला है उसमें मनी प्लांट का हरे रंग का पौधा --

लगा हुआ है और दूसरे गमले में भी एक पौधा लगा हुआ है हरे रंग का।

पीली और ऑरेंज कलर की नीचे की तरफ कुछ घास है चारों तरफ लोहे की --

उसने नीले रंग का कपड़ा लगा रखा है।

का कुछ लगा हुआ है टायरों के ऊपर पैकिंग लगी हुई है छोटे बड़े सभी तरह के टायर हैं।

ये एक बहुत बड़ा जंगल है यहाँ चारों तरफ हरे हरे --

पेड़ है हरी हरी घास नजर आ रही है कुछ ऊबड़ खाबड़ पत्थर भी हैं।

सामने की तरफ कुछ गमले रखे हुए हैं उनमें हरे हरे पेड़ हैं उन पेड़ों के अंदर लाल रंग के गुलाब के फूल उग रहे हैं।

बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं रंगबिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

पेड़ है और कुछ फूल भी लगे हुए हैं।

सामने की तरफ प्लस का निशान दिखाई दे रहा है उसके पीछे सफेद रंग की दीवार है।

इन्होंने रंगबिरंगी साड़ियां पहन रखी है एक महिला ने बालों में सफेद रंग का गजरा लगाया रखा है।

लटका रखा है नीचे की तरफ दो व्यक्ति खड़े हैं।

काले रंग का पट्टा पहन रखा है और कमर में --

प्योर वेज लिखा हुआ है अंदर की तरफ बहुत चमकदार लाइटें हैं।

एक गाड़ी पर कुछ लिखा हुआ है पीछे की तरफ।

चारों तरफ रंग बिरंगे पीले ऑरेंज कलर के फूल हैं पास में ही एक पेड़ है उसमें भी लाल रंग के फूल उगे हुए हैं कुछ गेंदे के --

पोल भी है यहाँ पर कुछ मिट्टी सी भी पड़ी हुई है।

कुल्लड़ के डिजाइन के भी कुछ कप रखे हुए हैं।

कुछ लाल रंग की कुर्सियां भी लगी हुई हैं एक व्यक्ति वह नीचे बैठा हुआ कुछ कर रहा है। स्टेज पर --

और कुछ हरे हराए रंग के पेड़ हैं बीच में से आने जाने के लिए रोड भी --

यहाँ सामने की तरफ एक दीवार पर ब्लैक बोर्ड लगा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है वह जल रही है।